एक प्लेट है एक प्लेट में दाल की सब्जी है एक पनीर है कुछ चावल है खीर है प्याज है आलू है।

एक टेबल राखी है बड़ी दो कुर्सीया राखी है एक कुर्सी साम राखी है लोह का पाइप है।

बहुत प्रकार के बच्चों के कपड़े टके हुए हैं।

नीचे के साइड पेड़ लगे हुए हैं नीचे के साइड छोटे-छोटे पेड़ हैं इधर एक बकरी खड़ी हुए हैं।

दो बाइक खड़ी है ऊपर दो हैलमेट रखे है।

चार फर्नीचर लग रहिया है एक अलमारी है। अलमारी के ऊपर लाइट लगी है।